उ दुकान की है जहा पर ड्राइक्लीन होती हैं कपड़े मतलब होती हैं और ये जो व्यक्ति है सफेद रंग के कपड़े है उनके पास ये उन्हे ड्राइक्लीन करने के लिए लेकर जा रहे है और ये दुकान बहुत अच्छी लग रही है इसका कलर भी बहुत प्यारा हैं।

मैंन हैं और ये जो बच्चों की रपकनिया हैं जैसे की बच्चे खेलने के लिए ये बच्चों का गार्डन हैं और हम देख रहे हैं इसपे काफी सामान रखा हुआ हैं।

पार्क है और यहाँ बच्चों का झूला है यानि है और एक साइड को ये इसका स्टैन्ड लगा है जिससे कि सीढ़ी लगी हुई है।